एक आदमी बैठा हुआ है अह ऑरेंज कलर के अह बनियान और नीली टोपी में।

के ऊपर एक महिला खड़ी हुईं हैं और उसके ऊपर भी एस_बी_आई का बोर्ड लगा है।

दीवार से ऊपर गुलाबी रंग का पेंट है जिस पर गोल शेप के तस्वीरें लगी हुई हैं छोटी छोटी।

हरे रंग के कपड़े से बना हुआ ये टैंक जैसा नजर आ रहा है।